और वहाँ पर एक इमर दो इमरजेंसी के लाल रंग के खड़े और दो आदमी खड़े हुए हैं। आसमान सफ़ेद और नीला रंग का है और बहोत सारे पेड़ नज़र आ रहे हैं।

यहा पर बहुत सारे लेट व पेड़ नज़र आ रहे है और पम्प भी नज़र आ रही है और वहाँ पर घर एक रूम घर है।

इस चित्र में यहाँ पर रेलवे स्टेशन का बाहर का रोड है।